और जो उसके पीछे की दीवाल है उसका कलर वॉटर कलर हैं।

और आइड साइड बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है बीच में एक छोटा सा खंभा दिख रहा है।

और उसके राईट साइड कुछ डिजाईन्स बनी हुई हैं।

और राईट साइड कुछ मशीने रखी हुई हैं।

सामने एक गार्डन है। यहाँ पर एक बच्‍चा है जो कि बेडमिंटन खेल रहा है।

और एक व्‍हाईट कलर की मूर्ति है।

और एक पियानो रखा हुआ है।

उसपे एक चर्च का साईन बना हुआ है।

सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति है उसके आईट साइड कुछ रेलिंग लगी हुई है।

एक कुर्सी रखी है। जिसके ऊपर एक बैग रखा है। साइड में एक टेबिल है।

उसके लेफ्ट साईड में कार है सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है।